इसमें बहुत सारे लोग कम कर रहे हैं पीला टोपी पहने हैं बहुत अच्छा दिख रहा है।

यहा पे दो आदमी है कुछ कुछ पर्चियाँ पकड़े है खिड़की है दरवाजा है पानी की बोतल है बोर्ड है।

दुकान है एक यहा पे चार लोग कुछ-कुछ खरीद रहे है बहुत अच्छे से बैट है यहा पे बैट है कापी किताब है।

तीन गेट दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।